टेग टेबल के ऊपर नोटपैड पड़ा हुआ है और एक कैंची भी रखी हुई है।

लगे हुए हैं। एक ब्लैक कलर की चेयर्स पड़ी हुई है।

और बहुत सारे पेन वगैरह भी पड़े हुए हैं।

और वृक्ष वगैरा भी पड़े हुए हैं यहां पर--

और बहुत सारे लोग यहां पर खड़े भी है।